पेड़ों के नीचे में दो छोटा सा घर भी दिख रहा है।

फ्लॉवर का रैक एक ग्लास का बना हुआ है।

लड़कियों के पीछे रेड कलर का बोर्ड में फोर्टीन फेब्रुअरी भी लिखा हुआ है।

घर के ऊपर बड़े बड़े लाइट लगाए हुए हैं।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारा चेयर और टेबल दिखाई दे रहा है।

मंदिर का गेट रेड कलर का है।

ये तस्वीर एक होटल का बाहर का है।

आदमियों के सामने में एक छोटा सा आग भी जलाए हुए है।